लिबरऑफिस में ड्राइंग्स में टेक्स्ट प्रविष्ट करने पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ड्राइंग्स में टेक्स्ट के साथ कार्य कैसे करें
ड्राइंग्स में टेक्स्ट कैसे फॉर्मेट करें और टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ कार्य कैसे करें
हम यह भी सीखेंगे इंडेंट्स स्पेस सेट करना और टेक्स्ट अलाइन करना
लाइन्स और ऐरोज़ में टेक्स्ट जोड़ना
कैलआउट्स में टेक्स्ट रखना
टेक्स्ट दो तरीकों से जोड़ा जा सकता है
यह बनाए हुए ऑब्जेक्ट में सीधे प्रविष्ट किया जा सकता है
लाइन्स और ऐरोज़ पर सहित
यह टेक्स्ट बॉक्स में प्रविष्ट किया जा सकता है एक स्वतंत्र ड्रा ऑब्जेक्ट के रूप में
हम उंबटू लिनक्स वर्जन 1004 और लिबरऑफिस सूट वर्जन 334 का उपयोग कर रहे हैं
ड्रा फाइल वाटर साइकिल को खोलें और इसमें कुछ टेक्स्ट जोड़ें
हम सूर्य के आगे दो सफेद बादलों में क्लाउड फॉर्मेशन टेक्स्ट जोड़ेंगे
सफेद बादल समूह को चुनें
समूह को प्रविष्ट करने के क्रम में इस पर डबल क्लिक करें
ऊपर के बादल को चुनें
अब ड्राइंग टूलबार से टेक्स्ट टूल चुनें
क्या आप देखते हैं कि कर्सर एक छोटी वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन में परिवर्तित होता है
यह टेक्स्ट कर्सर है
अब टेक्स्ट क्लाउड फॉर्मेशन टाइप करें
अब पेज पर कहीं भी क्लिक करें
अन्य सफेद बादल के लिए भी समान टेक्स्ट प्रविष्ट करें
समूह से बाहर आने के लिए पेज पर कहीं भी डबल क्लिक करें
अब इसी तरह से सूर्य को नाम दें
ऑब्जेक्ट्स में टेक्स्ट प्रविष्ट करना इससे आसान नहीं हो सकता है
अगला ग्रै बादल समूह को चुनें
पहले के अनुसार समूह प्रविष्ट करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें
प्रत्येक बादल में रैन क्लाउड टाइप करें
ग्रै बादल में टेक्स्ट काले रंग में होने के काऱण यह दिखाई नहीं देता है
अतः टेक्स्ट के रंग को सफेद में बदलें
टेक्स्ट चुनें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें और Characterचुनें
कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
फोंट इफेक्ट्स टैब पर क्लिक करें
फोंट कलर फील्ड में नीचे स्क्रोल करें और व्हाइट चुनें
ओक पर क्लिक करें
फॉन्ट का रंग सफेद में बदलता है
इसी तरह से दूसरे बादल के टेक्स्ट का रंग बदलें
टेक्स्ट चुनें और दायाँ क्लिक करें और फिर कैरेक्टर चुनें
फोंट कलर में व्हाइट चुनें
समूह से बाहर आने के लिए पेज पर कहीं भी डबल क्लिक करें
इसी तरह त्रिकोण में माउंटेन शब्द टाइप करें जो पहाड़ को चित्रित करता है
आप अक्षर के लिए टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं जो कि फॉन्ट शैली बदलता है और फॉन्ट को विशेष प्रभाव देता है
आप पैराग्राफ के लिए भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं जैसा कि टेक्स्ट पंक्तिबद्ध करना इंडैट्स सेट करना या स्पेस देना और टैब पॉजिशन्स सेट करना
आप इस डायलॉग बॉक्सेस को या तो कांटेक्स्ट मेन्यू से या मैन मेन्यू से ऐक्सेस कर सकते हैं
मैन मेन्यू से कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स ऐक्सेस करने के लिए फॉर्मेट चुनें और कैरेक्टर चुनें
मैन मेन्यू से पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ऐक्सेस करने के लिए फॉर्मेट चुनें और पैराग्राफ चुनें
आयत में एक मोटी काली लाइन बनाएँ यह दिखाने के लिए कि भू जल कहाँ जमा होता है
ड्राइंग टूलबार से लाइन चुनें
कर्सर को पेज पर ले जाएँ बायाँ माउस बटन दबाएँ और बायें से दायीं ओर ड्रैग करें
एक क्षैतिज लाइन बनाएँ जो आयत को दो समान भागों में बाँटेगी
तल दो भागों में बंट जाता है
अब लाइन को चौड़ी करें
लाइन चुनें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें
Lineपर क्लिक करें
लाइन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
स्टाइल फील्ड में ड्राप डाउन बॉक्स पर क्लिक करें
अल्ट्राफाइन 2 डॉट्स 3 डैशों चुनें
विड्थ फील्ड में वेल्यू प्वांइट 70 प्रविष्ट करें
ओक पर क्लिक करें
हमने लाइन को चौड़ा कर दिया है
आयत में टेक्स्ट ग्राउंड वाटर टेबल प्रविष्ट करें
पहले टेक्स्ट टूल चुनें
ड्राइंग टूलबार पर कैपिटल ट ऑप्शन है
ड्रा पेज पर जाएँ
अब कर्सर इसके नीचे छोटे कैपिटल आई के साथ एक प्लस सिग्न में परिवर्तित हो जाता है
आयत के अंदर क्लिक करें
ध्यान दें कि एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देता है
यहाँ ग्राउंड वाटर tableटाइप करें
टेक्स्ट बॉक्स के केंद्र में टेक्स्ट को पंक्तिबद्ध करने के लिए कर्सर को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रखें
सबसे ऊपर स्टैंडर्ड टूलबार में सेंटर्ड आइकन पर क्लिक करें
इसी तरह से
त्रिकोण में रैन वाटर फ्लोज फ्रॉम लैंड इंटो रिवर्स एंड एसईए टेक्स्ट जोड़ें
नियत कार्य के लिए इस ट्यूटोरियल को रोक दें
एक समचतुर्भुज बनाएँ
टेक्स्ट थिस इस आ स्क्वेयर आ स्क्वेयर हस फोर इक्वल साइड्स एंड फोर इक्वल एंगल्स
ईच एंगल इन आ स्क्वेयर इस नाइनटी डिग्रीस थे स्क्वेयर इस आ क्वाड्रिलेटरल प्रविष्ट करें टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स में ऑप्शन्स को उपयोग करके इस टेक्स्ट को फॉर्मेट करें
टेक्स्ट में फोंट साइज स्टाइल और एलिग्नमेंट ऑप्शन्स को लागू करें
अब आकृति में ऐरोज़ व्यवस्थित करें
ये ऐरोज़ जमीन वनस्पति और बादलों के जल भाग से जल का वाष्पीकरण दर्शाते हैं
सबसे बायें ऐरो को चुनें
अब क्लिक करें और पहाड़ की ओर ड्रैग करें
बीच का ऐरो चुनें
अब क्लिक करें और पेड़ों की ओर ड्रैग करें
तीसरा ऐरो बादलों के जल से जल का वाष्पीकरण दर्शाता है
लाइन बनाने के लिए कर्व ऑप्शन का उपयोग करें जो पहाड़ों पर जल नीचे की ओर जाना दर्शाती है
ड्राइंग टूलबार से कर्व पर क्लिक करें और फ्रीफॉर्म लाइन चुनें
ड्रा पेज पर पहाड़ के आगे कर्सर रखें
बायाँ माउस बटन दबाएँ और नीचे ड्रैग करें
आपने एक वक्र लाइन बना ली है
अब इन प्रत्येक ऐरोज़ में विवरण जोड़ें
दायीं ओर पर पहले ऐरो को चुनें और आसानी से इवेपोरेशन फ्रॉम रिवर्स एंड सीस टाइप करें
पेज पर कहीं भी क्लिक करें
टेक्स्ट लाइन पर दिखाई देता है
ध्यान दें कि टेक्स्ट ठीक लाइन पर रखा गया है और इसलिए यह स्पष्ट नहीं है
टेक्स्ट को लाइन के ऊपर लाने के लिए लाइन पर क्लिक करें
टेक्स्ट क्षैतिज अवस्था में स्थित है
कर्सर को टेक्स्ट के अंत में रखें और Enter की को दबाएँ
पेज पर क्लिक करें
टेक्स्ट पंक्तिबद्ध हो जाता है
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से ऑप्शन्स का उपयोग करके लाइन्स पर टेक्स्ट टाइप और ऐरोज़ भी फॉर्मेट किये जा सकते हैं
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू का उपयोग करके फॉन्ट का आकार फॉर्मेट करें
टेक्स्ट पर क्लिक करें
इवेपोरेशन फ्रॉम रिवर्स एंड सीस
टेक्स्ट अब क्षैतिज अवस्था में है
टेक्स्ट चुनें और कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को देखने के लिए दायाँ क्लिक करें
साइज चुनें और 22 पर क्लिक करें
फॉन्ट का आकार बदल गया है
अब अन्य सभी ऐरोज़ के लिए निम्न टेक्स्ट टाइप करें
इवेपोरेशन फ्रॉम सोइल इवेपोरेशन फ्रॉम वेजिटेशन रुन ओफ वाटर फ्रॉम थे माउंटेन्स अब ग्रै बादलों से वर्षा गिरना दर्शाएँ
वर्षा दर्शाने के लिए डॉटेड ऐरोज़ बनाएँ जो बादल से नीचे की ओर इंगित हों
ड्राइंग टूलबार से लाइन एंड्स विथ अरो चुनें
फिर बायीं ओर पर पहले ग्रै बादल पर कर्सर रखें
बायें माउस बटन को दबाएँ और इसे नीचे ड्रैग करें
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के लिए दायाँ क्लिक करें और Lineपर क्लिक करें
लाइन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
स्टाइल ड्राप डाउन सूची पर क्लिक करें और 2 डॉट्स 1 दश चुनें
ओक पर क्लिक करें
हमने डॉटेड ऐरो बना लिया है
इस बादल के लिए दो और ऐरोज़ को कॉपी और पेस्ट करें
अब अन्य दो बादल के लिए दो ऐरोज़ कॉपी और पेस्ट करें
अब डॉटेड ऐरोज़ पर टेक्स्ट रैन जोड़ें
वाटर ऑब्जेक्ट के ठीक ऊपर टेक्स्ट बॉक्स में इवेपोरेशन टो फॉर्म थे क्लाउड्स टेक्स्ट टाइप करें
ड्राइंग टूलबार से टेक्स्ट टूल चुनें और दिखाए गए अनुसार टेक्स्ट बॉक्स बनाएँ
इसमें इवेपोरेशन टो फॉर्म थे क्लाउड्स टाइप करें
ड्राइंग टूलबार से टेक्स्ट टूल चुनें
और ग्रै बादलों के बगल में टेक्स्ट बॉक्स बनाएँ
इसमें कंडेंसेशन टो फॉर्म रैन टाइप करें
टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पर पहला क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स को स्थानांतरित करें
अब इसे इच्छित स्थान पर ड्रैग और ड्राप करें
पिछले स्टेप्स का अनुकरण करें टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग करके टाइटल वॉटरसाइकिल डायग्राम दें
और टेक्स्ट को बोल्ड में फॉर्मेट करें
हमने जल चक्र आकृति का चित्र बना लिया है
अबCallouts के बारे में सीखते हैं
कैलआउट्स क्या हैं
वे विशेष टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं जो ड्रा पेज में एक ऑब्जेक्ट या स्थान के लिए आपका ध्यान खींचते हैं
अधिकांश कॉमिक बुक्स उदाहरणस्वरूप कैलआउट्स में टेक्स्ट रखते हैं
ड्रा फाइल में एक नया पेज जोड़ें
मैन मेन्यू से इंसर्ट चुनें और स्लाइड पर क्लिक करें
एक नया पेज प्रविष्ट हो गया है
कैलआउट ड्रा करने के लिएDrawing टूलबार पर जाएँ
कैलआउट आइकन के बगल में छोटे काले त्रिकोण पर क्लिक करें
कई कैलआउट्स प्रदर्शित होते हैं
रेक्टेंगुलर कैलआउट पर क्लिक करें
कर्सर को पेज पर ले जाएँ बायें माउस बटन को दबाएँ और ड्रैग करें
आपने एक कैलआउट बना लिया है
आप कैलआउट में टेक्स्ट प्रविष्ट कर सकते हैं जैसे आपने अन्य ऑब्जेक्ट के लिए किया
डबल क्लिक करें और कैलआउट के अंदर थिस इस एएन एक्जाम्पल टेक्स्ट टाइप करें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
इस ट्यूटोरियल में आपने सीखा कि कैसे ड्राइंग्स में टेक्स्ट के साथ कार्य करें
ड्राइंग्स में टेक्स्ट फॉर्मेट करें
टेक्स्ट बॉक्सेस के साथ कार्य करें
टेक्स्ट को इंडैन्ड स्पेसिंग और पंक्तिबद्ध करें
लाइन्स और ऐरोज़ में टेक्स्ट जोड़ें
कैलआउट्स में टेक्स्ट रखें
खुद से इस नियत कार्य को करने की कोशिश करें
इस स्लाइड के अनुसार एक नोट बुक लेबल और एक निमंत्रण पत्र बनाएँ
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
इस मिशन पर अधिक जानकारी दिए गए लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित हैआईआईटी मुंबई की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद